ये एक ऑफिस है यहाँ पे पाँच गेट्स बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक लैपटॉप है सब एक गेट्स खड़ा है और गेट्स --

रेड और पिंक है एक आदमी चल रहा है यहाँ पे तीन लेडीज जा रही हैं ।

एक आदमी का कलर अम येलो और उसके पेंट कलर ब्लैक है यहाँ पे बहुत सारे --

छठ पूजा का सीन लगता है जहाँ पे एक आदमी अपने सर पे दौरा लिए हुए है और एक लेडीज ने हाथ में ईंट ली हुई है और यहाँ पे तीन लेडीज हैं एक लेडीज के साड़ी का कलर पिंक है।

और इस दुकान की सजावट की हुई है जहाँ पे बैलून लगे हैं और एक आदमी खड़ा है जिसके शर्ट का कलर ब्लैक ह ब्लैक कलर का जीन्स भी वो पहन --

जो कि बहुत सारे लड़के हैं कोई बच्चे को ब्लैक बेल्ट कोई बच्चे को येल्लो बेल्ट मिला है यहाँ लड़की भी है और छोटे-छोटे लड़के भी हैं।